जिसमें स्कूटी है जिसमें अलग अलग प्रकार क स्कूटी हैं।

सामने जमीन है जिसमें मिट्टी दिख रहा है।

एक टेबल है जिसके ऊपर एक बोतल रखा हुआ है।

इस फोटो में एक जिम सेंटर को दर्शाया गया है।

जो पिलर है खंभा का उसमें एक पोस्टर टंगा हुआ है।

सामने ही पेड़ दिख रहे हैं जो हरा कलर के है।

एक टावर दिख रहा है।

मित्र में कुछ भगवान के फोटो रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक दुकान के अंदर की तस्वीर को दर्शाया गया है।

लाइन के तार दिख रहे हैं।

सामने लाइट लगे हुए हैं।

घास उगा हुआ है उसके ऊपर एक पत्थर है।

एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है।